उन कुर्सियों पर भी गद्दा रखा हुआ है।

पीछे की तरफ़ पेन के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ दरवाजा दिखाई दे रहा है।

उसके के पीछे बहुत सारे पत्थर और भी हैं।

सामने की तरफ एक दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ कुछ खाली ड्रॉवर भी है।

अगल बगल में एक बाइक भी है।

पीछे की तरफ बहुत सारे घरे भी हैं।

सामने की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

के अंदर दवाइयां रखी हुई हैं।

सिंडिकेट चित्र बने हैं सामने की तरफ एक फैंस दिखाई दे रही है।

यह दृश्य एक चर्च का है।

पीछे की तरफ क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है।

ज्यादा कुछ लिखा हुआ भी है सामने की तरफ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक महिले के दुकान का है।

बगल में एक टंकी भी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक लैंप दिखाई दे रहा है।

सामने में एग्जास्ट भी दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बगल में बहुत सारे बाइके भी दिखाई दे रही हैं।

नीचे एक तरफ पानी दिखाई दे रहा है।

कुर्सी के बगल में और भी दो तीन चार कुर्सियां रखी हैं।

सामने की तरफ एक पोस्टर लगा है।

डब्बे के ऊपर बहुत सारे प्लास्टिक छिपे हुए हैं।

पीछे की तरफ से वॉल दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ बहोत सारे सामान भी रखे हुए हैं।

नीचे के तरफ गंदगी बिछी हुई है।

बस के अंदर बैलून लगा हुआ है।

सामने है कुछ लोग बैठे हुए हैं।

घर के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

दरवाजे पे वॉलेट कलर का एक कपड़ा लगा हुआ है।

की तरफ और भी कुछ लाइटे दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक बोरा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ सब्जी रखे हुए हैं।

नीचे की तो जमीन दिखाई दे रही हैं।